पेड़ दिखाई दे रहे हैं यह ग्राउंड के बाहर बहोत सारे पुआल भी हैं यह पुआल यह पुआल के किनारे बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग भी है।

यह मछली की दुकान है यह दुकान काफी बड़ी है यह दुकान में बहुत से छोटे-बड़े मछलियां रखी गई है।